यह एक स्कूल के सामने का गेट है। जिसके सामने एक स्कूल बस खड़ा है। स्कूल के सामने जो रोड गया है उसके सामने सूर्य भगवान का प्रतिमा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके सामने --

और यहां प्रति दिन कितने बच्चे आते हैं और पढ़ते लिखते अपना जीवन बना--

शादी के मनोरंजन के पार्टी में बैठे हैं और यहां पर--

और पंखे कितने अच्छे डिजाइनों में लगाए गए हैं यहां पर लेडीज --

इस इमेज में देख सकते हैं माहौल कितना अच्छा प्यारा है ।

के महोत्सव का नजारा है जैसा कि यहां पर सभी लोग अपने गिफ्ट को प्रदान कर रहे हैं यहां पर ढेर सारे टीचर भी खड़े हैं जो कि बच्चों को--

अच्छी राह पे जाने के लिए समझा रहे हैं और यहां पर अपने कार्य होते रहते हैं नजारे अच्छे अच्छे यहां पे दे--

मार्केट में अच्छे दाम में बेचे जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं ।

जो कि आप देख सकते हैं यहां नए कंपनी की मशीन आई हुई है ये--

यहां पर कितने अच्छे-अच्छे तरीके से सजावट किया गया है इमेज के माध्यम से हम आपको ये--

अन्य अन्य मूर्तियां यहां पर मौजूद जहां का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं ।

के बादल कितने अच्छे और कितने प्यारे तरीके से लग रहे हैं यहां का मोर अपने--

राढ़ और अन्य चीजें यहां पर लगाई गई हैं जैसे--

एक बाइक के ऊपर के हिस्से को खोल के अंदर के भाग का पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं ये शुरू में कैसा था इसके ऊपर पार्ट को चढ़ाकर--

अपनी जरूरत के समान को लेने आते ही रहते हैं कितने समान--

बिगड़ चुके हैं जो कि आप इमेज में देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से दिख रहा है ।

कई ब्राइट क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं जैसा आप देख रहे हैं यहां के--